ये चित्र एक कार का है। सामने की औऱ टी बोल कर लिखा है रेड कलर से औऱ प्लेट लागी हुई है। आईने खुले हुए है।

चित्र भी कुछ मंदिर का ही है जहाँ पर कुछ स सामान रखा हूआ है आसपास मे और कुछ फुले लगाई हुई है रखी हुई है बहुत सारे फुल है।

ये चित्र मे एक कार है संबोधि बोलकर।

ये चित्र किराना स्टोर का है। जहाँ पर बहुत सारे स्नॅक्स है।

फूल भी पहना हुआ है और ऊपर की और बहुत सारे फूल लगे हुए है।

ये चित्र मे कुछ सामान आईने मे रखा हुआ है।

यर चित्र मे दो आदमी है जो बिल्डिंग मे कुछ बता ले रहे है बिल्डिंग बन रही है लकड़िया लगे हुए है फतरे पड़े हुए है।